प्रोटीन्स और मैक्रोमोलेक्यूल्स के इस ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न सीखेंगे प्रोटीन डेटा बैंक से प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स लोड करना
पीडीबी डेटाबेस से pdb फाइल्स डाउनलोड करना
प्रोटीन्स के सेकन्डेरी स्ट्रक्चर्स भिन्न फॉर्मेट्स में दिखाना
हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाईसल्फाइड बॉन्ड्स हाईलाइट करना
इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको जमोल एप्लीकेशन विंडो से बेसिक ऑपरेशंस के साथ परिचित होना चाहिए
यदि नहीं तो सम्बंधित ट्यूटोरियल्स के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएँ
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ उबन्टु ओएस वर्जन 1204 जमोल वर्जन 1222 जावा वर्जन 7 मोजिल्ला फायरफॉक्स ब्राउज़र 220 बड़े बायोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर का विश्लेषण जैसे प्रोटीन्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड्स डीएन और रना क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स और पॉलीमर्स जमोल एप्लीकेशन प्रयोग करके किये जा सकते हैं
यहाँ मैंने एक नयी जमोल विंडो खोली है
बायोमॉलिक्यूल्स के 3डी स्ट्रक्चर्स को डेटाबेस से सीधे डाउनलोड करके देखा जा सकता है
ऐसा करने के लिए फाइल मेन्यू पर क्लिक करें नीचे गेट पीडीबी पर जाएँ
एक इनपुट डायलॉग बॉक्स स्क्रीन पर दिखता है
निश्चित प्रोटीन के लिए हमें इनपुट बॉक्स में चार लेटर का पीडीबी कोड टाइप करना है
यह कोड प्रोटीन डेटा बैंक वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है
यह प्रोटीन डेटा बैंक का वेब पेज है
यह बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी रखता है जैसे प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स
उदाहरण अब पीडीबी वेबसाइट से पैन्क्रीऐटिक एन्ज़ाइम इन्सुलिन के लिए पीडीबी कोड प्राप्त करने की कोशिश करते हैं
सर्च बॉक्स में प्रोटीन का नाम ह्यूमन इन्सुलिन टाइप करें
कीबोर्ड पर एंटर की दबाएं
अब प्रदर्शित वेबपेज पर नीचे जाएँ
पीडीबी कोड्स के साथ ह्यूमन इन्सुलिन के ज्ञात स्ट्रक्चर्स की सूची स्क्रीन पर प्रदर्शित होती है
उदाहरण अब कोड 4ईएक्स1 के साथ ह्यूमन इन्सुलिन सलेक्ट करते हैं
प्रोटीन के नाम पर क्लिक करें
स्ट्रक्चर्स के विवरण के साथ एक विंडो खुलती है
जानकारी जैसे प्राइमरी साइटेशन मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन और स्ट्रक्चर वैलिडेशन इस वेबपेज पर उपलब्ध हैं
हम प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स को pdb फाइल्स में सेव कर सकते हैं और उनको जमोल में 3डी मोड में देख सकते हैं
पेज के ऊपरी दायें कोने पर स्थित डाउनलोड फाइल्स लिंक पर क्लिक करें
ड्राप डाउन मेन्यू से पीडीबी फाइल विकल्प सलेक्ट करें
स्क्रीन पर डायलॉग बॉक्स दिखता है
सेव फाइल विकल्प सलेक्ट करें
ओक बटन पर क्लिक करें
प्रोटीन का स्ट्रक्चर 4ex1pdbज़ में डाउनलोड्स फोल्डर में सेव किया जायेगा
उसी प्रकार आप भिन्न प्रोटीन्स की अपेक्षित pdb फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं और उनको अलग फाइल्स में सेव कर सकते हैं
अब इन्सुलिन के 3डी स्ट्रक्चर को देखने के लिए जमोल विंडो पर जाते हैं
यदि आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं तो आप जमोल पैनल पर प्रोटीन स्ट्रक्चर को सीधे डाउनलोड कर सकते हैं
टेक्स्ट बॉक्स में चार लेटर का पीडीबी कोड 4ईएक्स1 टाइप करें और ओक बटन पर क्लिक करें
यदि आप इंटरनेट से जुड़े हुए नहीं हैं तो टूल बार पर ओपन आ फाइल आइकन पर क्लिक करें
पैनल पर डायलॉग बॉक्स खुलता है
4ex1pdbज़ की लोकेशन यानि डाउनलोड्स फोल्डर पर जाएँ
डाउनलोड्स फोल्डर सलेक्ट करें और ओपन बटन पर क्लिक करें
4ex1pdbज़ फाइल सलेक्ट करें और ओपन बटन पर क्लिक करें
इन्सुलिन का 3डी स्ट्रक्चर स्क्रीन पर खुलता है
पैनल पर प्रोटीन का डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले बॉल एंड स्टिक है
पैनल पर प्रोटीन का मॉडल हाइड्रोजन परमाणुओं से रहित दिखाया गया है
हाइड्रोजन परमाणुओं सहित मॉडल दिखाने के लिए मॉडेलकिट मेन्यू खोलें
एड हाइड्रोजेंस विकल्प तक नीचे जाएँ और इस पर क्लिक करें
अब पैनल पर मॉडल हाइड्रोजन परमाणुओं सहित दिखाया गया है
प्रोटीन स्ट्रक्चर को जल अणुओं सहित भी दिखाया गया है
जल अणुओं को छिपाने के लिए दर्शायी स्टेप्स का अनुसरण करें
पहले पॉप अप मेन्यू खोलें और सिलेक्ट पर जाएँ
सब मेन्यू से हेटेरो चुनें और अल्ल वाटर विकल्प पर क्लिक करें
पॉप अप मेन्यू फिर से खोलें स्टाइल शीम पर जाएँ और सीपीके स्पेसफिल विकल्प पर क्लिक करें
यह सभी जल अणुओं को सीपीके स्पेसफिल डिस्प्ले में बदल देगा
पॉप अप मेन्यू फिर से खोलें स्टाइल पर जाएँ नीचे एटम्स पर जाएँ और ओफ विकल्प पर क्लिक करें
अब हमारे पास पैनल पर जल अणुओं रहित इन्सुलिन स्ट्रक्चर है
आगे हम प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को भिन्न फॉर्मेट्स में दिखाना सीखते हैं
पॉप अप मेन्यू खोलें
सिलेक्ट विकल्प पर क्लिक करें
नीचे प्रोटीन पर जाएँ और अल्ल विकल्प पर क्लिक करें
पॉप अप मेन्यू दोबारा खोलें और नीचे स्टाइल पर जाएँ फिर शीम पर
सीपीके स्पेसफिल बॉल एंड स्टिक स्टिक्स वायरफ्रेम कार्टून ट्रेस आदि जैसे विकल्पों के साथ एक सब मेन्यू खुलता है
सब मेन्यू से कार्टून विकल्प पर क्लिक करें
यह डिस्प्ले प्रोटीन्स के सेकेंडरी स्ट्रक्चर जैसे हेलिसेस रैंडम कॉइल्स स्ट्रैंड्स शीट्स आदि दर्शाता है
अधिक डिस्प्ले विकल्पों के लिए पॉप अप मेन्यू खोलें और नीचे स्टाइल पर जाएँ फिर स्ट्रक्चर्स पर
यहाँ हम प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को दर्शाने के और अधिक विकल्प देखते हैं
उदाहरण के लिए स्ट्रैंड्स विकल्प पर क्लिक करें
अब पैनल पर प्रोटीन स्ट्रैंड्स की तरह दिखाया गया है
डिस्प्ले का रंग बदलने के लिए पॉप अप मेन्यू खोलें
नीचे कलर पर जाएँ एटम्स सलेक्ट करें और ब्लू विकल्प पर क्लिक करें
पैनल पर रंग में बदलाव देखें
स्ट्रक्चर को वापस ball and स्टिक डिस्प्ले में बदलने के लिए पॉप अप मेन्यू खोलें स्टाइल सलेक्ट करें फिर शीम और बॉल एंड स्टिक विकल्प पर क्लिक करें
हम प्रोटीन मॉडल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाई सल्फाइड बॉन्ड्स को भी हाईलाइट कर सकते हैं
हाइड्रोजन बॉन्ड्स दिखाने के लिए पॉप अप मेन्यू खोलें और नीचे स्टाइल पर जाएँ और फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स विकल्प पर जाएँ
पॉप अप मेन्यू में हाइड्रोजन बॉन्ड्स विकल्प विशेषताएँ रखता है जैसे कैल्कुलेट सेट हाइड्रोजन बॉन्ड्स साइड चैन सेट हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन थे बैकबोन और बांड्स की मोटाई बदलने के लिए भी विकल्प रखता है
हाइड्रोजन बॉन्ड्स को मॉडल में बदलने के लिए कैल्कुलेट विकल्प पर क्लिक करें
हाइड्रोजन बॉन्ड्स सफ़ेद और लाल लम्बे डैशेज़ की तरह दिखाए गए हैं
हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मोटाई बदलने के लिए पॉप अप मेन्यू से 010 आ विकल्प पर क्लिक करें
अब पैनल पर हम मोटे हाइड्रोजन बॉन्ड्स देख सकते हैं
हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स का रंग भी बदल सकते हैं
पॉप अप मेन्यू में नीचे कलर पर जाएँ फिर हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर फिर ओरेंज विकल्प पर क्लिक करें
पैनल पर हमारे पास सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स नारंगी रंग में हैं
डाईसल्फाइड बॉन्ड्स और सल्फर परमाणु मॉडल में पीले रंग में दिखते हैं
डाईसल्फाइड बॉन्ड्स को रूपांतरित करने के लिए पॉप अप मेन्यू में डाईसल्फाइड बॉन्ड्स विकल्प खोलें
उन विशेषताओं पर क्लिक करें जिन्हे आप बदलना चाहते हैं जैसे साइज़ और रंग आदि
उसी प्रकार भिन्न एंजाइम्स की pdb फाइल्स को खोलने की कोशिश करें और उनके 3डी स्ट्रक्चर्स देखें
अब सारांशित करते हैं इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न सीखा प्रोटीन डेटा बैंक से प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स लोड करना
डेटाबेस से pdb फाइल्स डाउनलोड करना
पीडीबी कोड प्रयोग करके इन्सुलिन का 3डी स्ट्रक्चर देखना
जल अणुओं रहित प्रोटीन स्ट्रक्चर देखना
भिन्न फॉर्मेट्स में सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाना
हाइड्रोजन बॉन्ड्स और डाईसल्फाइड बॉन्ड्स को हाईलाइट करना
यहाँ आपके लिए एक नियत कार्य है
पीडीबी डेटाबेस से ह्यूमन हीमोग्लोबिन की pdb फाइल डाउनलोड करें
कार्टून डिस्प्ले में सेकेंडरी स्ट्रक्चर दिखाएँ
प्रोटीन के पोरफीरिंन यूनिट्स को हाईलाइट करें
पीडीबी कोड के लिए निम्न लिंक पर जाएँ
इस उर्ल पर उपलब्ध वीडियो देखें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
यह भारत सरकार के एम एच आर दी के आई सी टी के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है httpspoken tutorialorgNMEICT Intro आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
इस ट्यूटोरियल को देखने के लिए धन्यवाद